यहां एक रूम का दृश्य दिख रहा है रूम के अंदर एक चेयर का दृश्य दिख रहा है चेयर के ऊपर नीले रंग का कपड़ा पहनाया हुआ है।

नीचे कई सारे तार दिख रहे हैं।

यहां पे कुछ डब्बा रखा हुआ है प्लास्टिक रखा हुआ है।

यह एक रूम का दृश्य दिख रहा है रूम के अंदर कई सारे आदमी बेंच पे बैठे हुए है और चेयर पर बैठें हुएं हैं।

पीछे कांच के अंदर एक आदमी दिख रहा हैं।

पीछे एक पोस्टर निकला हुआ है उसके पीछे एक तार दिख रहा है।

पेपर रखे हुए हैं नोटबुक रखा हुआ है यहां पे एक कीबोर्ड दिख रहा है कीबोर्ड के बगल में कंप्यूटर दिख रहा है।

दुकान के अंदर कई सारे रेक पर कई सारे डब्बे रखे हुए हैं।

ऊपर में एक फैन चल रहा है एक घड़ी दिख रहा है।